बड़ा बड़ा पा-पार्क जैसा बना हुआ है अ-तीन चार लोग बैठे है दो तीन लोग खड़े है सफेद शर्ट में खड़ा हुआ है सफेद टी-शर्ट खड़ा हुआ है।

म-म-म मतलब इ-इ-इ इधर काच का ऑफिस बना हुआ है उसमे सलून बोर्ड लगा हुवा हैं पांच लोग अंदर बेठ हैं नाई कटिंग कर रहा हैं।

ये खड़े है एन वहां पे कुछ कपड़े पहने है और बी केप लगाये है मोज़े पहनी है जूत पहने एंड खुच एक्सरसाइज कर रहै है।

एक दिवाल है रेलिग लगी हुयी हे बहुत से कपडे रखे हुए है एक में मेट बिछी हुई है।

एक शोरुम गाडी खड़ी है पार्ट्स वगेरा कुछ कर रहे है पन दगी पंडगी हुई है उस उस उसमे कर है उसमे सर्विसिंग कर रहा है।